ने हुए हैं पीछे सीमेन्ट की दीवाल बनी हुई है पीछे मकान है |

पीछे ढेर सारे वृक्ष लगे हुए है पेड़ पौधे लगे हुए है और ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है।

पीछे ढेर सरे बॉक्सेस रखे हुए हैं। अलग अलग रंग के कोई छोटा कोई बड़ा। ढेर सारे बॉक्सेस हैं।